एक आदमी और एक लेडी बेग उठाकर जा रहे है सामने एक फ्लाय ओवेर है जिसके निचे से वाइट कलर की गाड़ी जा रही है।

बच्चे है बहोत सारे टेबल लगा हुआ है प्लेट लगी जिसमे खाना है कुच्छ--

एक आदमी जिसने ब्लैक कलर का टीसर्ट पहना हुआ है।

बहोत सारी चेयर अंदर लगी हुई है एक आदमी चेयर पर बेठा हुआ है एक आदमी कुच्छ कर रहा है खड़ा होकर।

जिसने रेड कलर की पेंट पहनी है पीछे की तरफ पेड़ है बहोत बड़े बड़े--

राईट हैण्ड की तरफ एक और जुला है जिसमे सीडिया लगी हुई है।

उनके पीछे क्रोस का निशान है क्रिश्चियन है लाइट है एक लड़का --

जाली वाले दरवाजे के पास खड़ा हुआ है पीछे बड़ा सा गेट है।

तिन शॉप है लेफ्ट की तरफ शॉप मेभी--

बहोत सारी चपले जुटे सेंडिल पड़े है।

का रर्पट बिछा हुआ है ब्लू एंड रेड कलर का।

जिसने ब्लैक कलर के कपडे पेहने हुए है लेफ्ट की तरफ एक लड़का बेठा हुआ है एक एक्ससाईस कर रा है।

चर्च है कारपेट बिछा है रेड कलर का बहोत सारे चेयर टेबल लगे हुए है।

बहोत अच्छा रूम डेकोरेट किया हुआ है।

कुछ आदमी टेबल पे बैठे हैं एक दो आदमी खड़े हैं एक वेटर है जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है ऑरेंज कलर की पगड़ी है।

राईट हैण्ड की तरफ दो ओरते बेठी हुई है।

राईट हैण्ड की तरफ भी कुछ छोटा सा मंडप सजाया गया है खाने के लिए भी कुछ समान है।

डांस के लिए डी_जे वीजे लगा हुआ है सोफे लगे हुए है ब्राउन कलर के पीछे की तरफ राउंड में बोहोत प्यारा--

शॉप के उपर रेड कलर का बहोत बड़ा--

दो दुकाने है दुकान के उपर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है।

एक शॉप के बाहर केनी पड़ी हुई है ब्लैक कलर की एक बर्तन पड़ा हुआ है।

लेफ्ट की तरफ खेत है पेड़ है।

और राइट हैंड पास एक पिंक कलर का डिब्बा है सामने पर्दे लगे हुए हैं।

वेलकम लिखा है गोल्डन कलर से झालर है गोल्डन कलर की बिच में साइड में--

इसकी स्पीड बहोत हाई होती है उपर से एक खम्भे की तार जा रही है।

ब्यूटी का समान है लेफ्ट की तरफ गोल्डन फेसल --

और भी बहोत सारा सामान है सामने ब्लू कलर की एक बाल्टी पड़ी हुई है।

इस पिक्चर में एक स्टेज है।

दो ट्रेक्टर खडे है एक बड़ा है एक छोटा है।

उसने मुह्ह पर मास्क पहना है ब्लू कलर का।